नीचे ग्रीन कलर का तार पट्टी बिछा हुआ है आदमी दिख रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा क्लासरूम दिख रहा है जहां पर बहुत सारे टेबल लगे हुए है सामने का टेबल ग्रीन कलर का है और एक खिड़की बना हुआ है दो बोर्ड लगे हैंएक व्हाइट और ब्लैक है।